जो अब ऐसा दिखता हैऔर इसमें बुद्ध की प्रतिमा बहोत सारे कटिन दार बनाए गए हैं।

और यहां पर एक ट्रक है जिसमें लोडिंग करके अलग कोयले को भेजा जाता है सेलिंग के लिए।

और सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे से सजाया हुआ जगह हैं ।

पीछे ताड़ का पेड़ भी है और पानी टंकी भी है और यह ट्यूशन या कोचिंग लग रहा है और यहाँ पे बच्चे और टीचर का --

यह बस है और यह रोड पे है और इसमें समीर लिखा हुआ है ।

यहां पर डब्बे में सजाया होगा फूल बहुत सारा रखा हुआ है और यह व्हाइट कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर पिंक कलर है।

यह एक विद्यालय जैसा लग रहा है और इसके अंदर गार्डन भी बनाया हुआ है और इसमें --

यह एक शादी का होटल जैसा लग रहा है और इसमें रेड कलर से और पिंक कलर और व्हाइट कलर का कुर्सी और --

जिसमें बैंक है और खिड़की है और सीढ़ी बनाया हुआ है और इसके गेट पर ग्रील लगाया हुआ है।

यह किसी नदी या पोखर जैसा लग रहा है।

यह किसी समुद्र या गंगा जी का पिक्चर लग रहा है जिसमें --